सरकारी अफिसर का जो अंदर में घुस के सरकारी का पैसा वेस्ट भी कर रहा है सरकारी आदमी लोग काम वाम करता है।

इंडियन ऑयल का क्या बोलते हैं ट्रक है जहां से पेट्रोल की मतलब पेट्रोल को लाया पहुंचाया जाता है। पेट्रोल पंपो तक दूर-दूर से पेट्रोल का सप्लाई होता है। पैट्रोल ला के क्या बोलते हैं पेट्रोल --